ये तीन-तीन आदमी खड़े हुए हैं वहां पे एक आदमी पेंट कर रहा है दूसरा आदमी ब्रश बोर्ड को टांग रहा है और जो है सो एक बाइक भी लगा हुआ है और जो है सो एक लड़का सीढ़ी के ऊपर चढ़ के बोर्ड को टांग रहा है और एक लड़का पेंट कर रहा है और बगल में सड़क --

बहुत बड़ा झरना है पहाड़ पर से झरना नीचे आ रहा है नीचे नदी है बहुत बड़ा पहाड़ है हरा-भरा पेड़ है उसके बाद पानी नीचे आ रहा है और और बगल में पानी ऊपर से जा रहा है और पानी बहु ऊपर से झरने की तरह नीचे में आ रहा है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डाक घर है यहाँ पे और बिल्डिंग है बगल में हरे-भरे पेड़ हैं साइकिल लगा हुआ है।

बहुत अच्छी दुकाने हैं यहाँ पे सब सामान मिलते हैं सुधा का हर एक आइटम मिलता है| पानी का बोतल मिलते हैं| सामने एक स्कूटी लगी हुई है और पीछे बिल्डिंग है और आइसक्रीम भी मिलती है।

एक बिल्डिंग है इसमें तीन चार स्टाफ है दो आदमी खड़े होके लाइन में लगे हुए हैं। शीशे का मकान है ग्रिल लगा हुआ है और बोर्ड भी लगा हुआ है| सामने बिल्डिंग है बोहोत बढ़िया बिल्डिंग है यहाँ पे सब आदमी काम

क्रिकेट का मैदान है यहाँ पे दो लड़की क्रिकेट खेल रही एक विकेट कीपर है दूसरा बैट बैट पकड़ा हुआ है हाथ में बैट है और बगल मे नेट प्रैक्टिस ग्राउंड है| यहाँ पे सब प्रैक्टिस करते हैं और बहुत अच्छा ग्राउंड है।